और काफी सारा यहां पर घर भी दिखाई दे रहा है जो की दो दो मंजिल या तीन तीन मंजिल का घर दिखाई दे रहा है।

यह ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से पता चल रहा हैं कि यहां काफी सारे बकत दिखाई दे रहे हैं।